और सामने कुछ बच्चों की लड़कों की लाइन लगी हुई है।

सिर पे कुछ लमकाय लगाया हुआ है।

और एक उस पर लिखा है पर चाइल्ड रेट बीस नीचे कुछ झूले भी लगे हुए हैं मछली जैसी झूला बना हुआ हैं।

एक वाइट कलर की टंकी में कुछ पाइप्स भी खड़ी की हुई हैं।

साइडों मे बहोत सारे पेड़ भी दिख रहे है।

ये एक सैलून है जिसका नाम है औरा ब्यूटी सैलून ।

साइड में कार का एक बैनर भी लगा हुआ है।

बीच में एक फूल बनाया हुआ हैं।

जिस पर लाल रंग के कुछ फूल भी लगे हुए हैं।

जिस पर तीन लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं।

जीसमें दिख रहा है पीछे दीवार पर एक ए_सी भी लगा है।

एक ऊपर कपड़े के ऊपर कुछ ना--

एक टेप सी पड़ी हुई है और छोटे छोटे और भी बोहोत सारे बॉक्सेस भी पड़े हुए है।